बादर ऊपर हमें ब्राउन कलर का देखने को मिल रहा है।

दान पेटी का रंग हमें लाल देखने को मिल रहा है।